--जिस के अंदर यह भैया ने अपना पैर डाला हुआ है काली पैंट पहनी और ग्रे कलर की टी शर्ट पहनी हुई दिखाई दी रही है नीचे ज़मीन पे हल्का पीला और गुलाबी कलर नजर--

यहाँ लोग बैठी हैं और कुछ फाइल दिखाई दे रहा हैं यहाँ पर पीला गुलाबी और वाइट कलर दिखाई दे रहा है और यहाँ से आसमान भी दिखाई दे रहा है कुछ और पेड़ भी नज़र आ रह हैं।

सामने ही एक बड़ी सी एल-सी-डी लगी हुई है ऊपर तीन घड़िया लगी हुई है और ये भूरे कलर की दीवार दिख रही हैं। जीस--